पानी देख सकते है और इसके पीछे जो हैं।

जो बच्चो को लेकर चल रहे होते है और आगे भी इसके दो व्यक्ति खडे हुए है।

ए विश्व अ ए विश्वविध्यालय जो है वहाँ पे ढेर सारे पौधे लगाए --

जो यहाँ पे रिपेर हो रहै है।

पहाड़ी जैसा अ फ़त्थरो को भी देख सकते हैं ।

उछले रंग के कार भी है और इसके आगे जो है वहाँ पे व्यक्तियों को भी देख सकते हैं ।

जो स्काय जिम अ जिम की तस्वीर हम इसस तस्वीर में देख सकते हैं ।

इ स्टेडियम बहोत खुबसूरत हे।

जहा पे ढेर सारी मात्राओ को भी देख सकते है और इसके आगे एक व्यक्ति खुर्शी पर बैठा हुआ देख सकते है।

इस तस्वीर में हम एक मंदिर को अ देख सकते हैं ।

और इस तस्वीर में हमें नीले रंग का आ आसमान भी दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में हम एक शिनरी को देख --